उस दुकान का आस पास में आदमी दिखाई दे रहा है।

इसके पीछे भी जंगल दिखायी दे रहा है।

रेड कलर का भी दिखाई दे रहा है।

और ऊपर में लाइट जल के दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में एक तालाब दिखाई दे रहा है।

अंदर सब तीन कुर्सी भी दिखाई दे रहा है।

इसे ऊपर मे लाइट जल के दिखाई दे रहा है।

से एक झंडा पकड़ के लड़की भी दिखाई दे रहा है।

फिस्टे ने हाफ जाफर पहन के है।

इसका पीछे में पहाड़ भी--

इस कमरा के अंदर एक पंखा दिखाई दे रहा है।

इतनी सी भीड़ में बहुत सारे इंसान दिखाई दे रहा है।

जैकेट येलो कलर भी दिखाई दे रहा है।

भी दिखाई दे रहा है।

और इसका पीछे में बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है।

जिससे कुर्सियां भी दिखाई दे रहा है।

ये तस्वीर में बहोत सारा इंसान दिखाई दे रहा है।

और ये बगल में माथा में चुन्नी डाल के एक दिखाई दे रहा है।

ये तस्वीर में बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है।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

तस्वीर में एक दुकान दिखाई दे रहा है।